यह पिक्चर को देख के यह लग रहा है की ये दोनों घूमने आए है और इनके पीछे जो है एक डेम है और ये यहाँ हस्बैंड वाइफ होंगे या फिर कोई अपने ही अपने ही होंगे।

इस फोटो को देखे यह पता चल रहा है की यहाँ इनके बैकग्राउन्ड पे लाइट है फ्लावर्स है।

कोई कंपनी का समारोह चल रहा है या फिर किसी भी चीज का कुछ समारोह चल रहा है।

हाँ एक आदमी लेटे हुए है और उनका पैर कोई और एक आदमी लेके स्ट्रेच कर रहें है।

यहाँ लाइट ही लाइट है और यहाँ कोई बाराती गाड़ी आई हुई है वो सब को उसको घेरे हुए हैं।

कोई फंगक्शन है शादी का और यहां लोग जो है आपस में यहां कैमरे भी है यहां लोग भी है आपस मे कुछ कर रहे है।